कंपास एंड शोरूम और वहां पर एक आदमी है जो के बैग डाला हुआ है और एक आदमी है।

ओ यहाँ पर एक आदमी है जो रिसेप्शन पर ठहरा हुआ है वो मास्क लगा के और यहाँ पर टेबल पर एक बुक रखी हुई है।

ये एक रोड है यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग वहाँ पर रात हो रही है।

वहाँ पर एक आदमी है जो वहाँ पर बैठा हुआ है और वहाँ पर सामने भी एक आदमी है जो वहाँ पर--

है और यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है बिहार आर्ट हैरेट्स --

यहाँ पर एक बोर्ड है जोके यहाँ पर दिख रही है बहुत सारे--

एक बड़ी सी बिल्डिंग हैं इस बिल्डिंग पर लिखा हुआ है एंड डेवलपमेंट --

कार रखी हुई है और बड़ा सा लाइट का खंबा है जोके वायरिंग्स हैं --

तीन बोटल हैं और यहाँ पर सोफा है और यहाँ पर सामने एक आदमी हैं जोके माइक में--

यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर के एक फोटो है आदमी का--